कैलेंडर भी टांगे हुए हैं देवाल पर।

चित्र में एक मैदान दिख रहा है जो हरी भरी घांसे से भरे हुए हैं।

अगल-बगल भी सारे घर हैं ऊपर आसमान है।

अगल-बगल बेंच कुर्सी दिख रहे हैं और कुछ फोटो भी दिख रहे --

इस चित्र में एक रोड दिख रहा है जिस रोड पर घास-भूस है एक पूल टाइप का है जो वाइट कलर का है एक पत्थर --

और दीवाल पर तीन चार का टांगे हुए हैं बोर्ड --

फील्ड है जिस फील्ड में पेड़ पौधे हैं।

नीचे घास है जो हरी भरी भरी हुई है।

इस तस्वीर में एक घर दिखया जिस घर में--

छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो व्यायाम कर रहे हैं।

अगल-बगल पूरा ऊपर नीचे लाइट जड़ रहे हैं।

जिस पर सब बच्चे काम कर रहे--

इस घर में एक कमरा है जिस कमरे में--

और टेबल भी रखा हुआ है।

और दीवाल है जिस दवाल पर एक पंखा लगा हुआ है।

कोटे पर एक गमला है जिसमें फूल पत्तियाँ भरे हुए हैं और एक घर है जिस घर का कलर --

और बीच में रोड है रोड पर--

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में --

छोका हुआ पाइप के तरह घर का कलर --

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में--

इस चित्र में एक खाली मैदान दिख रहा है जो भरे भरे घास से भरे हैं सामने एक .

खिड़की गेट लगे हुए हैं और ए-सी भी लगे हुए हैं।

जो हरे भरे ऊपर आसमान है।

पेड़-पौधे हैं बगल-लगल घर है ऊपर आसमान है।

घर का बिल्डिंग -बड़ा है और कुछ--

दुकाने जिसमें सामान धरे हुए हैं ऊपर आसमान है।

में है हाथ में मूर्ति में एक त्रिशूल लिए --

एक लड़का है जो बोतल में पानी पी रहा है।

पेड पौधे भी बगल-अगल में हैं।

और लड़का का कलर का टी-शर्ट --

ग्रीन है हाफ पॉइंट बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक दुकान है दुकान में आदमी बैठे हुए हैं।

और एक आदमी दोकान से सामान ले रहा है दू आदमी बैठे हैं एक आदमी खड़े हैं।

और दुकान पूरा सामान से--

चबूतरा है चबूतरा पर सारे सब्जियाँऔर आलू फल फूल धरे हैं।

चल रहे हैं उसमें एक आदमी--

इस तस्वीर में माता जी का फोटो दिख रहा है।

घर के ऊपर एक प्लस का चिन्ह हैं।

और अगल-बगल पेड़ पौधे हैं।

इस तस्वीर में एक जमीन दिख रहा है जिस जमीन के--

तीन गाड़ियां पर्दा से ढके हुए हैं।

और जमीन पर हल्का-फुल्का घंसूस जमे--

झंडा लिया हुए हैं बाकी सब डांस कर रहे हैं।

बीच में पूरा सजाया हुआ घर है।

एक हरे भरे घास दिख रही हैं अगल-बगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है घर में ढेर सारे पंखे लटके हुए हैं।

जिस दिवाले पर उस--

खड़ा हुआ एक और टंकी है एक आदमी है खड़े हुए हैं जो ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए हैं और मार्क्स लगाए हैं अगल-बगल--

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

जमीने जमीन पर घास भोस--

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में चारों तरफ--

ब्राउन है दो-तीन आदमी हैं।

ढेर सारी आदमी भी आ रहे हैं और सामान ले रहे हैं।

और एक ओटा है जिसमें--

घर बना हुआ है करकट का है।

खिड़कियाँ दिख रही हैं और कुछ आदमी दिख रहे हैं कुछ पोल और तारे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रोग दिख रहा है रोड पर--

ऊपर बॉल लगे हुए हैं सामने--

इस तस्वीर में जमीन है जमीन पर तीन-चार बच्चे हैं जो बियाम कर रहे हैं।

सजाया गया है इसमें लाइट पड़ रहा --

इन चार झूमड़ भी लटकाए गए हैं देवान में कुछ तरह के सामान भी--

उस पर बोतल भी धरे गए हैं और कुछ सामान्य हैं।

और घर को पूरे कपड़े से सजाया गया है और इसमें फूल भी अगल-बगल फूल पौधे लगाए गए हैं।

समान भी धरे हैं जिसमें थाली उली रखा हुआ है।